यह एक कार वॉशिंग की शॉप है जहां कार वॉश किए जाते हैं यहां पे अलग अलग प्रकार से कार वॉशिंग --

यह एक बहोत ही शानदार और बहोत ही भावको क एक मंदिर है यह मंदिर बहोत सालों से यहीं है।

की पूरा हार्डवेयर का सामान मिलता है जोकि गारंटी और वॉरंटी के और टिकाऊ रहते हैं।